क्रिकेट ग्राउंड के अंदर कुछ व्यक्ति भी नज़र आ रहे है।

हमें यहां पर एक स्कूल नजर आ रही है।

जिम के बाहर एक दो पौधे भी लगे हुए हैं।

गाड़ी के पास एक व्यक्ति भी नजर आ रहा है।

डांस फ्लोर के ऊपर एक व्यक्ति डांस कर रहा है।

खेत के पास एक पानी की मोटर भी नजर आ रही है।

और यहां पर एक गैस सिलेंडर भी नजर आ रहा है।

रोड भी दिखती हुई नजर आ रही है।

यहां पर एक लाइब्रेरी दिखाई दे रही है।

बस के अंदर काले कलर की सीटें लगी हुई है।